बिल्डिंग का गए हैं वहां वहां रिक्शा है सब सामान है सब मिलता है यहां आदमी जा रहें --

देखो कित्ती मस्त है। इ लोग कित्ते अच्छे से काम कर रहे हैं। आपका घर टूट जाये तो आप भी बनाओ यहाँ। वो देखो वो प्लास्टर कर रहा है यहाँ। वो मिट्टी उठा के लेके जा रहा है।

आ चुके हैं सैलून में तो यहाँ पे देख सकते है ये गद्दा बैग इवे यहाँ पे ये आदमी खड़ा है काउन्टर के सामने पैसे गिन रहा है।

वो स्वीमिंग पूल भी था आप आओ यहाँ पे घूमो अच्छे से रहो घर भी आपको रेंट पे मिलेगा सब मिलेगा।

मेडिकल कैंप में नर्स हैं और यहाँ पे तीन डॉक्टर है और यहां पर देख सकते हो टेबल पे --